किसी जगह पर एक स्कूल दिखाई दे रही है जो की दो मंजिला इमारत मे बनी हुई है स्कूल के सामने चार पाँच पीले रंग की बस खड़ी हुई दिखाई दे रही है और बस के सामने एक व्हाइट कलर की बड़ी सी--

पर एक नदी दिखाई दे रही है जिसमें जो कि काफी भरी हुई लग रही है इसमें काफी पानी भरा हुआ है यह नदी काफी दूर तक फैली हुई नज़र आ रही है और काफी लंबी और गहरी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक बड़ी सी नदी दिखाई दे रहे है जिसके बीच एक बड़ी सी डबल फ्लोर की शिप खड़ी हुई नजर आ रही है जो की फिलहाल खाली नजर आ रही है ये किनारे पर खड़ी हुई है और एक और छोटी नाव इस शिप से बनी हुई दिख रही है ।]